इस चित्र में एक रंगों की दुकान दिखाई दे रही है।

पानी भी मुझे बहुत भरा नजर आ रहा है।

इस चित्र के एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक टैटू का बोर्ड नजर आ रहा है।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

इस चित्र में हमे एक डांस स्टूडियो दिख रहा है.

इस में एक जिम दिखाई दे रहा है।

व्यक्ति तस्वीर खिचवाता नजर आ रहा है।

नीचे लोग सब्जी बैठे हुए है।

आते जाते नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक नजर आ रहा है बहुत ही सुंदर बना हुआ है।

नीचे जा जाने के लिए सीढ़ियाँ भी नजर आ--

आस पास भी सजा हुआ है।

इस चित्र में हमे रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है.

आते जाते नजर आ रहे हैं।

योगा क्लास डांस क्लासेस चल रही हैं।

दुकानें भी बहोत सारी है।